इसमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ तस्वीर लगी है ये तीन खानों में दिखाई दे रहा है।

छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे --

एक बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है फर्श पे कुछ दिया बाती का सामान दिखा हुआ नजर आ रहा है।

लोकेशन में बत्ती-सत्ती जल रही है झूले लगा दिखाई दे रहा है आस-पास कुछ बैठे लोग दिखाई दे रहे है आस-पास हरे बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे --

चारों कोनों पे चार मटके रखे दिखाई दे रहे हैं आसपास कुछ घर व दीवारें भी दिखाई पड़ रही हैं।

एक टावर दिखाई दे रहा है आसपास--

अंदर काफी रैक और काफी लेडीज सूट साड़ियां टंगी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है आसपास कुछ हरे भरे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे कुछ आते जाते साधन दिखाई दे रहे हैं।

बच्चों के पीछे एक रेड प्लस का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बड़ा बिल्डिंग या घर दिखाई दे रहा है जिसके बाहर लगाए कूलर दिखाई दे रहा है आस पास और भी छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शाप शॉप दिखाई दे रही है जिसके बाहर कुछ व्यक्ति का पोस्टर लगा है एक व्यक्ति सावधान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।